ये एक चर्च है यहाँ पे ये चर्च बहोत बड़ा है बहोत ऊंचा है ये हरे रंग का है।

और उसकी बगर है। बोहोत सारे लकड़ी भी टूटे हुए हैं।

वो ब्रिज में गाड़ी भी चल रहा है नीचे मे बहुत सारे कचरे भी फेके हैं।